यहां पे एक शॉप की दुकान है और यहां पे एक माताजी की फोटो लगी हुई है और एक लोहे का पहिया है।

और यह दुकान में फर्नीचर भी लगा हुआ है।

साइडों में पाइप पड़े रखे हुए हैं और नीचे फर्श एक दम जमा हुआ है और साइड में कुछ भी नहीं है और साइड में एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

वगैरह वगैरह है एक आदमी सब्जी ले रहा है और एक स्कूटी आती दिख रही है और एक आदमी बाहर खड़ा है और एक हीरो होंडा की --

बहुत लंबा बरामदा है और यहां पे एक खंभा है बड़ा सा और सामने एक --

और पीछे कांच लगाया हुआ है और नीचे टेबल भी रखी हुई है।

और एक ट्रैक्टर भी है एक गाड़ी भी है और एक केन भी रखा हुआ है उस पे एक लोटा भी है।

यहां पे फुट ट्रेग नाम लिखा हुआ है।

और सामने बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है और इस गेट के ऊपर एक और घाटी भी लगी हुई है।

और बहुत चौड़ा रास्ता है और उस रास्ते में बहुत कीचड़ है नीचे बहुत गंदगी फैली हुई है।

और दो तीन सोफे हैं और एक आर्डर बुक पड़ी है एक साइड में भी एक बिसलेरी पड़ी है।